हमे महिलाओं का कपड़ा दिखण लग्यां कुरता दिख्येंण लग्यां और यम दुकान का छत का एंच हमें लाइट का बल्ब दिखण लग्यां और सफेद छत दिखण लगीं अर छत का एंच हमि कूलर दिखण --

ईं तस्वीर का अनुसार हमें सामनी एक होटल दिखेण लग्युं ते होटल का भैर हमू छकि पाणी का फुंवारा दिखण लग्यां।

अर समनि हमे छोटा छोटा फूल दिखण लग्यां कई प्रकार कोई सफ़ेद त कोई लाल च कोई गुलाबी कोई पीलू अर सामने हमे एक सीढ़ी दिखण लगी अर सीडी का एंच कुछ लोग खड़ा होयां छ।

अर इमारत की निस हमि दुकान दिखण लगीं और एक शटर बंद दिखेण लग्युं और इमारत का भैर हमे सड़की पर दुई बाइक दिखेण लगीं अर इमारत का बगल मा हेम कुछ ट्रक खडा दिखेण लग्यां।

ये पहाड़ परन एक छोटू सी गदरु ओण लग्युं अर व तालाब मा जे के मिल लग्युं और ये तालाब का किनार हमे डाल की टेहनी दिखेण लगी अर ते टेहनी पर हरयाँ हरयाँ पत्ता दिखण लग्यां।

जख पर कुछ लोग खड़ा होयां और यख एंच जु छो चदरि की छप्पर बणयूं इ जगह का भेर जु छो एक मैदान च मैदान पर हमें एक डालु दिखण लग्युं एक आदमी कुर्सी मथि बैठ्युं दिखण लग्युं।

अर ये स्विंग पूल भितर कुछ बच्चा ख्यल लग्यां च और लोह का खम्बा लग्यां च यख भितर बच्चो ते ख्यल तें अर ये स्विंग पूल भितर हमे एक छतरी भी दिखण लगी और समणी बच्चो तें पिसल तें भी दिखण लग्युं।